एगो ये मेरे ख्याल से ये डी.जे है इसके अंदर लाइटे लगी हुई है।

और एक दुकान है पीछे जो बंद है।

बुक स्टोर है जो अंकल सेल्फी ले रहे है चस्मा वाले अंकल सेल्फी ले रहा है पीछे वाला ये बुक स्टोर है येबहुत सारी बुक्स मिलती है पैन बुक्स वगैरा सब और कुछ नही है।

बस स्टैंड रोड है हाईवे वाला ऑटो जा रहा है एक आगे और पीछे एक बाइक जा रही है आंटी बैठी हुई है अंकल हेल्मट लगाए हुए है सामने एक ऑटो जा रहा है के आगे --

सामने एक ताजिया टाइप बहुत सारा माला टंगी हुई है हार टंगे हुये है और आस-पास लोग खड़े हुये हार के और पीछे साइड --

सामने एक लड़के की कटिंग हो रही है तीनो मशीन से और बाकी कुछ नहीं बस ये कटिंग करवा रहा है।